ये टोटो बाइक है एक पोस्टर भी लगाया हुआ है ये आदमी टोटो गाड़ी चलाता है।

खाली गाड़ी ही गाड़ी दिख रहा है शोरूम में आप लोग खरीदना चाहते हैं गाड़ी को तो खरीद भी सकते हैं बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये शोरूम ।

लोग यहां पर घूमने आते हैं बहुत ही साफ-सुथरा है ये जगह बहुत ही सुंदर है ये।

में लिखा है एक आदमी सुई ले रहा है ब्लडिंग जांच के लिए रिसर्च कर रहे हैं वैज्ञानिक।

एक डॉक्ट नर्स भी है हॉस्पिटल है कितना अच्छा है यह बहुत सुंदर जगह है रोगियों के लिए।

बहुत ही सुन्दर है ये जगह बहुत ही अच्छा है नाइस है ये जगह बहुत ही सुन्दर है लोग आते है यहां पर जीम करते है।

हल्का धुप भी है एक टैंक भी दिख रहा है बहुत ही हरा-भरा जगह है।